एक बड़ा सा ओ ऑरेंज कलर का पोस्टक लग --

चॉकलेट इसी कलर की है और --

यहा सामने एक बड़ा सा हॉल हैं जिसमे दो बड़ी बड़ी --

हम् दोनों साइड और बीच मैं एक कांच लगे हुए हैं जो नीले कलर के हैं और सामने दो खंबे हैं और --

पांच का छत बना हुआ है और सामने एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है।

साइड मैं दो लेडिज ए दिख रही हैं।

यहां सामने एक घर दिख रहा है जो आधे नीले कलर का और आधा सफेद है और --

दो खंबे दिख रहे हैं।

और इधर साइड में एक खंवा बना हुआ है।

गेट की डिजाइन बनी हुई है जो सफेद कलर की है घड़ी के ऊपर एक ए _सी लगा हुआ है और --

मैं झूमर लटका हुआ है.

दुकान दिख रही है जिसमे नीले --

टीनो की आ लगी हुई है और ऊपर एक --

मशीन रखी हुई है और उसके बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो हरे रंग के --

ए यहा सामने एक बड़ा सा हॉल हैं जिसमे बहत सारी अलवारिया रखी हुई हियाँ और बीच मैं --

सफ़ेद लाइटिंग लगी हुई है सामने कि दिवार का कलर पीला है और दोनो साईड सफ़ेद है।

दोनों साइड दो ताले डले हुए हैं और ऊपर --

और इस पर लाइट की रोशनी पड़ रही है इसके पीछे की दीवार सफेद कलर की है।

यहां सामने एक क अ हॉल दिख हवेली का हॉल दिख रहा है और ऊपर --

है और सामने दरवाजा है जो --

ऊंची लाल लाल मुट्ठी दिख रही है।

दरवाजा बना हुआ है जिसके सामने सि में ब्रिज बना हुआ है और दोनों साइड --

एक ऊंचा ऊंचा खंबा सा दिख रहा है ऊपर रंगीन आसमान दिख रहा है।

आधी दिख रही है ये लड़का --

में रूमाल डाले हुए है इसके पीछे --

यहां पे सामने एक बड़ा सा टीनों का --

जाले लगी हुई है और उसके अंदर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और ऊपर एक --

पोस्टर लगा हुआ हैं और नीचे एक आदमी खड़ा हैं और सामने एक --

क है और नीचे उसमे हरा सा कलर है एक में दोनों एक साइड --

एक साइड में पत्थर और पेड़ दिख रहे है एक साइड लाल लाल पेड़ और हरे पेड़ दिख रहे है और बीच में कुछ --

लिखा हुआ है और पीछे बहुत सारे पेयर है।

इसके पीछे एक छ लोहे का छोटा छल्ला डाला हुआ है जो छे खन का है और --

हम् छत बड़ी सी छत बनी हुई है जिसके नीचे --

दुकान बनी हुई है जिसके में एक मोटर साइकेल खड़ी है और इस साइड एक कार --

चोरिये खम्भे बने हुए है जो सफ़ेद कलर के है उनके पीछे कांच लगा हुआ है।

ऑरेंज अक्षरों से एस एस --

बार्बेरिया लिखा हुआ है और नि --

जो लगी हुई है जिसकी रौशनी --

वो सफ़ेद और नीले से टी-शर्ट पहने हुए है और इसके बाल सफ़ेद है और --

पीछे एक रैक बनी हुई है जिसमें बहुत सारी बुक हैं।

हा हरे फूलवारी चद्दर डली हुई है और दो दो सफेद तकिये --

सामने दीवार का कलर सफेद है और एक नीचे बैक --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पे साम म ने रोड है।

यहां पे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो आधी कथाई और आधी --

बगीचे में छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई --

और पजामा पर सफ़ेद पजामा पहने हुए है जिसका एक हाथ सामने और एक हाथ साइड में है और --

इस पहाड़ पर हरि हरि घाँस लगी हुई है और निचे सामने --